इस चित्र में एक व्यक्ति ट्रैक्टर को धो रहा है।

और एक ट्रैक्टर और भी खड़ा है।

और इसके बराबर में पेड़ भी लगा है।

इस चित्र में एक ढाबा है।

और छत के पंखे भी दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक नदी है।

एक कट्टा भी पड़ा हुआ है।

और दो व्यक्ति कुछ काम भी कर रहे हैं।

यहां पर एक पेड़ लगा है।

और एक लड़की हाथ माथे पर रख कर खड़ी है।

कुछ गमले भी रखे हैं।

यहां पर बच्चे भी बहुत हैं।

और यहां पर तीन चार कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

और यहां पर चार बच्चे भी खड़े हुए हैं।

इस चित्र में एक गेट है।

यहां पर बहुत भी फूल लगे हुए हैं।

और दीवाल पर एक मीटर लगा है।